नीले कलर का एक कोर्ट सतरंगी कलर का है।

जहां एक फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी है। जहाँ दूसरी गाड़ी टाटा इंडिगोस है।

इसमें कई सारे लोग दुकान लगाए हुए हैं जिसमें एक फल का ठेला भी लगा हुआ है।

यह फोटो छत की फोटो है यहां एक लड़का खड़ा हुआ है।

चद्दरे भी डली हुई है सामने एक पेड़ लगा हुआ है।

ये फोटो किसी झरने नदी साइड की फोटो है जिसमें साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक टेबल रखी हुई है साइड में उसमें और भी मशीन वगैरा रखी हुई हैं।

कुछ लड़कियों ने येलो कलर की कुछ लड़कियों ने रेड कलर की कुछ लड़कियों ने नीले कलर की कुछ लड़कियों ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है।

सामने दीवाल पर दो पेंटिंग टंगी हुई है जिसमें फूल की आकृति बनी हुई है।

इस फोटो में लकड़ी का फर्नीचर लगा हुआ है जिसमें कि कई सारे कपड़े के थान रखी हुई है सामने एक तख्त डला हुआ है जिसमें दो तकिया रखे हुए।

एक तखत डला हुआ है साइड में एक बिजली का खंभा लगा हुआ--

जहां सादी का कार्ड सोक पत्र विजिटिंग कार्ड्स छापे जाते हैं।

बीच में एक झंडा भी लगा हुआ है आगे एक मरकरी लाइट भी लगी हुई है।

एक आदमी खड़ा है जो कि आसमानी कलर की हाफ शर्ट पहने हुए है।

दरवाजा बंद है जिसमें बाहर कुछ डिजाइन भी बने हुए।

जय मां विद्या स्वीट्स में कुछ मिठाइयों की दुकान वगैरह रखी हुई है जिसमें कुछ मिठाइयां मिलती हैं मां विद्या कंप्यूटर सेंटर में ऑनलाइन सेंटर की दुकान खुली हुई है।

ये फोटो किसी पार्क का फोटो है जिसमें एक गेंड़े हाथी का स्टेच्यू बना हुआ है। जिसमें एक ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है।